यहां बाघ का कोई तस्वीर बनाए गए है जो --

यह सुन्दर भी लग रहा है और पुराना बिल्डिंग है।

पहाड़ भी जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

पानी का रखा हुआ है और इसका पेन --

ये गेट लोहा का लगा हुआ है की --

यहां पे कई तरह का गाड़ियां लगी हुई है और लाइट भी लगे हुए हैं देखने में बहुत अच्छा लग रहे हैं और पेड़-पौधे भी है और कई तरह के गाड़ियां हैं एक व्यक्ति झूला में कुछ लेकर जा रहे हैं और उधर एक लंबा जगह --